और यह बहुत ही खतरनाक जानवर लगता है। और इससे बचकर ही रहे तो फायदा है। और यहां देख सकते हैं ये ताला-वाला मारा हुआ है इसमें और ऐसा लग रहा है एक जू टाइप का लग रहा है ये।

मंदिर टाइप का लग रहा है। और यह बहुत ही बढ़िया है। और यहां पर देख सकते हैं कुछ ये मोमबत्ती-ओमबत्ती जल रहा है। और ऊपर में कुछ घर वर का डिजाइनिंग बहुत ही जबरदस्त की गई है। और यह बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में।